चाय पीते हुए दिख रहे हैं सामने में खिड़की दरवाजा दिख रहा है ।

साइड में टीन का सेट बना हुआ है और--

यहाँ एक मेडिकल स्टोर की दुकान है संजीगरी मेडिकल ऐड जनरल स्टोर का बोर्ड नजर आ रहा है ।

टेबल सामने में रखी हुई है उसके बगल में एक टेबल के और गुलाबी कलर की बोतल रखी है उसके बगल में और एक बोतल रखी हुई है।

और नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है और--

यहाँ कोई अभयारण्य कि फोटो नजर आ रही है रोड नजर आ रहा है और उसमें जंगली जानवरे चढ़ रहे हैं भैसा वगैरह।

भैंसा वगैरह हैं पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक जंगल की तस्वीर नजर आ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सफेद रंग का गेट बना हुआ है औ --